जिसमें बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

यह चित्र एक्वेरियम का दिखाई दे रहा है।

यह सीमेंट ऊंची क्वालिटी का और अच्छा बेचा जाता है।

यह एक किले का चित्र दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक बर्डे पार्टी का दिखाई दे रहा है।

यह दुकान होजरी शॉप की दिखाई दे रही है।

बहोत ही हैवी क्वालिटी के कमोड्स बेचे जाते है।

यहां बोर्ड पर जिला भोज चिकित्सालय धार लिखा हुआ है।

यह एक बहोत ही बड़ी मिठाई की--